ये फ्लावर की शॉप हैं नकली फ्लावर की शॉप हैं इसमें बहुत टाइप्स के फ्लावर्स रखे हैं बहुत सारे कलरस के फ्लावर्स रखे हैं फ्लावर पॉटस रखे हैं उसके अंदर भी फ्लावर्स हैं।

ये पिक्चर एक ब्रिज की है जिसपर एक लड़का फोटो क्लिक करवा रहा है।